इस फोटो में आप एक फ्रूट्स की दुकान देख सकते हैं जहां पर --

जहां पर बाइक्स की रिपेयरिंग सर्विस धुलाई होती है।

मिस्का आई_बी_पी सेंटर देख सकते है जहां पर हार्ट एंड कार्डियो --

जहां पर एक रिलायंस फ्रेश की--

चौबीस कैरेट गोल्ड जिसपर लिखा हुआ है ये हम स्किन पर लगाते है।

काम करती हैं जो हमारी सुरक्षा करती है।

टमाटर आलू गोभी सभी रखे हुए हैं।